अ सब्जियां उगाने का काम किया जा रहा है बहुत एकदम बढ़िया तक--

वेटर ऑर्डर सुन रहे हैं कि सर आपको क्या चाहिए।

प्रांगण में पानी भरा हुआ है और नाव रखी हुई है।

जो कि किसी कार्यक्रम के बाद फोटो खिंचवा कर खड़े हुए हैं।

तैरने की कोशिश कर रहे हैं।

यह स्कूल का एक ग्राउंड है।

यहां पर ये कपड़े की दुकान है जहां कपड़े का--

शादी का मजा ले रहे हैं।

कक्षा है जहां पर लोग पढ़ाई कर--